इस चित्र मे पराठे रखे हुए दिखाई दे रहे है सफ़ेद कलर की प्लेट मे पराठे रखे हुए है।

इनकी चोंच काली है इस एक आदमी इनके पास खडा हुआ दिख रहा है पीछे कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

इस चित्र मे एक थाली मे बहुत सारी लीची दिखाई दे रही है।

लीजिए कुछ पत्ते भी लगे हुए है।

इस चित्र मे एक मंदिर दिख रहा है मंदिर के अंदर दो लड़के खड़े हुए है बाहर कुछ मूर्तिया भी बनी हुई दिख रही है मंदिर के बाहर सीढ़िया भी बनी है।

इस चित्र मे एक दुकान दिख रही है दुकान के अंदर आय.सी.आय.सी.आय बैंक का ए.टी.एम है।

जिसपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है घर के नीचे ये बँक है।

इस चित्र मे एक सड़क दिख रही है।

इस चित्र में कुछ टेबल और कुरसिया लगी दिखाई दे रही है एक ऑटो में भी टेबल और कुर्सी बनाया गया है सामने दीवार पर कुछ गुब्बारे भी लगे दिख रहे है।